इ बैंक छै बैंक बंद छै बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक छै| बैंक के बाहर गाड़ी लगल छै खि-खिड़की खुलल छै|